यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जहाँ पे एक छोटा बच्चा का जन्मदिन मना रहे हैं | इतना अच्छा से सजावट किया है |

स्टेट बैंक है यहाँ पर सब आदमी --

यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे --